यहाँ पर नदी दिखाई दे रही है नदी के आसपास पानी दिखाई दे रही है पानी पर हरी हरी घास दिखाई दे रही है नीचे बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सड़क दिखाई दे रही है जिस पर एक पल्ली लगी हुई है जिस पे एक धागा बंधा हुआ है जिस से ईंट निच्चे की तरफ़ रखी हुई है इस --

दो लोग दिखाई दे रहे हैं जो सफ़ेद रंग की शर्ट पेहने हुए निचे का फर्श दिखाई दे रहा है जिस पर रंग बिरंगी आकृति बनी हुई है। छत दिखाई दे रही है छत पर एक गोल आकृति बनी हुई है जिस पर कुछ लिखा हुआ है और ये घना सुंदर से सजा हुआ है।